इस तस्वीर पे फेंसिंग भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर पर तीन टेंट को बन लगा के सेट किया गया है।

इस तस्वीर पर अन्य अन्य सामान को रखा गया है।

इस तस्वीर में कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बैंक को दिखाया गया है।

इस तस्वीर पर शोरूम के बाहर का माहौल को दिखाया गया है।

यहां एक घर सा बना हुआ है।

इस तस्वीर पर कई सारे लंबे उचे पेड़ दिखाई मिल रहे हैं।

इस तस्वीर पर आसमान नीला सा दिखाई मिल रहा है।

इस तस्वीर में दो कैंप नजर आ रहा है।

यह एक बड़ा सा इस ट्रेन स्टेशन का तस्वीर है।

ये एक रिज़ॉर्ट है इसके दायीं तरफ में एक बड़ा सा पहाड़ है।

यहां में दाएं बाएं में कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर कई सारे पत्थर भी बिखरे हुए हैं।